और एक दिवार नजर आ रही है जिसके ऊपर मुझे मीटर नज़र आ रहा है उसके ऊपर मुझे लाल कलर की बत्ती नज़र आ रही है ऊपर की तरफ मुझे लड़की कुछ पाइप नजर आ रही है।